इस इमेज में मुझे दिखाई दे रहीं हैं और --

रेड कलर दिख रहा है और पैर दिख रहे हैं जेंसो के।

इस इमेज में मुझे कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं | उनके कपड़े दिख रहे हैं|

पंखा दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर भी दिख रहा है। सिल्वर कलर दिख रहा है।